राम लक्ष्मन और बजरंग बली का भी यहाँ मंदिर अच्छे खासे देखने के लिए मिल रहा है। आस-पास का ग्रिल लाल कलर का है। ओ-- वाहाँ का स्थल भी है।

घूम फिर रहे है अच्छे खासे माहोल की जगह दिख दिखने मे मिल रहा हे आस पास की माहोल अच्छी खासी पार्क लग--

यहाँ अच्छी से अच्छी आप को सर्विस मिलने के मिलते है| यहाँ के वेटर भी अच्छे खासे है और पढे लिखे भी ग्राहकी वगेरा भी है सब चीजे ठीक-ठाक है।

लोग घूमने आ रहे है। ढेर तरेह से अच्छे नीचे में सजावट अच्छी तरह से किये बेगरा है। अच्छे खासे लग रहे देखने में यहाँ का जगह माहोल अच्छी खासी है। यहाँ लोग पहुंच रहे देखने के लिए।

अंदर में बिल्डिंग वैगरह भी अच्छे खासे लाइट से सुविधाएं अउरी कूलर के भी ए.सी. की भी सुविधाएं दी गई है और अच्छे नीचे में टाइल्स वैगरह अच्छे खासे उजले ढंग का और लगाए गए और क्या कहते हैं और अच्छी सी टाइल्स कलर की गई हैं।

यहाँ अच्छे-अच्छे कलर्स हैं जो देखने के देखने मे खूबसूरत और सुंदर सा ही लग लग रहा है एक नजारा बेहतरीन।

यहाँ अच्छी से पूजा वगैरह के समान भी खड़े वगैरह है। देखने में भी अच्छे खासे लग रहे हैं। यहाँ माता के चुन-- चुनरी ओराहे ओराहे हैं गए हैं। घंटी वगैरा भी हैं।

आस-पास में किराना वगैरह का दुकान पान उन का दुकान दिख रहा है गुटखा वगैरह बेचते उचते हैं यहाँ लोगो --

यहाँ बस के बस स्टैंड वगैरा भी है यहाँ लोग पहुंचते है बस पकड़ने के लिए भी अच्छी से अच्छी सुविधाएं भी है।